एच.पी. लिखा हुआ है और सामने एक बस खड़ी है जो कि लाल और व्हाइट कलर की है। कुछ लोग भी --

सामने बोहोत बड़ा सड़क है। सड़क के पास एक ब्राउन कलर की कार है।

ए.टी.एम. मशीन रखा हुआ है यहाँ पर और बगल में एक डस्टबिन भी रखा है।

बोहोत ही सुन्दर लग रहा है यहाँ पर मंदिर। बोहोत ही अलग ढंग का दिख रहा है।

बिलडिंग जैसा है जोकि एक मंजिला है और यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर और यहाँ पर दो डस्टबिन है।

यहाँ पर एक दृश्य नजर आ रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भोत बड़ा पोल है।

यहाँ पर जो साइंटिफिक रूम का जो कलर है वो ब्लू कलर का है। बहोत ही अच्छा लग रहा है। लाइट भी लग--